कुछ कटोरी रखी हुई है प्लास्टिक की। जिनमें पीला कलर है और पुष्ट है पिंक कलर के।

ए.टी.एम है पुलिस खड़ी हुई है काला बेल्ट है मास्क है और कांच लगा हुआ है।

बेंच है। ब्लू कलर के हैं। काले कलर के हैं।

पिंक कलर दिखाई दे रहा है और नीला कलर दिखाई दे रहा है बेनर है सफेद कलर का---

और मिट्टी पड़ी हुई है और टिन चद्दर है सफेद कलर के---

सफ़ेद कलर का अखबार है बोर्ड है कलर ब्लैक कलर के विन्डोज़ हैं काले कलर की--